यह एक अस्पताल है अस्पताल के ऊपर में एक बैनर लगाया गया है ऊपर लिखा गया है कुमारगंज ग्रामीण अस्पताल।

कमरे के अंदर एक लाल रंग की कुर्सी रखी गयी है।

कमरे के अंदर बहोत सारे डेस्क और बेंच है।

सामने एक डिस्प्ले बोर्ड है जिसकी रंग नीला लंग का है।

चौकीदार ने नीले रंग की शर्ट पहने हुए है।

नीचे एक हरा रंग का कपड़ा बिछाया गया है।

फूलों का रंग नीला पीला हरा सफेद है।

बाजार में एक सड़क है सड़क के ऊपर एक सामने में एक बाइक रखी गई है बाइक का रंग नीला है।

एक दुकान के पीछे दो स्कूटी खड़ी है।

यह एक घर की छत है छत पर घर बनाया जा रहा है।

पीछे एक और इमारत है। इमारत का रंग हरा है।

इमारत के पीछे बहुत बड़ी नारियल के पेड़ हैं।

बगीचे के बाहर बहुत बड़े बड़े घने पेड़ है।

पीछे के किनारो में बहोत सारे लाइटे लगाई गई हैं जिनका रंग सफेद है।

ये खाली सड़क है पीछे दूर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है।

पहाड़ के ऊपर एक बहोत बड़ी सी टॉवर है।

सड़क के बीच में छोटी सी जगह है जहां पर थोड़े से पेड़ हैं।

सामने सड़क के एक तरफ छोटी सी घड़ है घड़ को ईंटों से बनाया गया है।

द्वारा को बंद रखा गया है द्वारा में लिखा गया है प्रवेश निषेध आम रास्ता नहीं है।

द्वार के अंदर एक सड़क जा रही है विद्यालय के तरफ --

रास्ते पे तीन लोग आने जाने कर रहे हैं।

दुकान के सामने बहोत लोग सामान खरीद रहे हैं।

काउंटर में नेट से बनाया गया है।

आदमी ने अभी एक मछली को काटा है।

आदमी ने काले रंग की स्वेटर पहनी हुई है गले में गुलाबी रंग के कपड़े ओढ़ी हुई है।

आदमी ने टोपी लगाए रखी है ठंडा से बचने के लिए --

आदमी के पीछे बांस से बॉर्डर बनाया गया है।

यह एक दुकान है दुकान के सामने की ओर कैलॉग्स कार्नफ्लेक्स रस्क क्विकर ओट्स डेली सूजी फॉर्च्यून ऑयल है।

पीछे की ओर सेंट सेरिलैक भुजिया फिनायल ऑइल है।

बाएं तरफ कपड़े धोने का साबुन शैंपू और तेल है।

दाएं तरफ पारले जी का बिस्किट ओरियो बिस्किट है।

एक खाली सड़क है सड़क के आगे सभी लोग है।

सभी लोगों ने अपने बाइक्स को पार्क करके रखी है इस खाली सड़क पर।

सामने में एक बालूरघाट एयरपोर्ट है जिसके नीचे का दरवाजा खुला हुआ है।

सामने में एक छोटी सी घर है।

लूरघाट एयरपोर्ट के अंदर छोटी सी पेड़ है पीछे बहोत सारे पेड़ है।

एक लड़के ने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है लड़के के पीछे बहुत बड़ी सी एक पत्थर है।

पत्थरों के ऊपर एक पेड़ है पेड़ के पत्ते पत्थरों पर है।

एक छोटी सी पत्थर पर एक लड़की बैठी हुई है।

यह एक सड़क है जहां पर बहोत ज्यादा भीड़ है बहोत लोग एक दुकान से कुछ खरीद रहें हैं।

दुकान की दीवारों को सफेद रंग से रंगा गया है।

अंदर बहोत सारे पाइप और नल है।

ऊपर एक पाइप लटकाया गया है जिस पर बहुत सारे सामान लटकाए गए हैं कुछ बल्ब्स हैं।

उसके पीछे एक दुर्गा देवी मंदिर है।

एक बिल्डिंग में एक पोस्टर लगाया गया है।

पोस्टर में लिखा है रूपा फ्रंटलाइन हंक --

यह एक तबेला है तबेले में बहोत सारे गाय हैं सभी गाय का रंग भूरा रंग का है।

सामने एक पेड़ है जो जिसमें बहोत सारे पत्तियां है।

एक सीढ़ी लगा कर रखी गई है सामने एक पेड़ में।

तबेले के छत को टीनो से बनाया गया है।

एक सलून है सैलून के बाहर के दरवाजों को शीशो से बनाया गया है शीशो में लिखा गया है डेनिम सलून --

सामने में एक आदमी खड़ा है आदमी ने सफेद रंग के गंजी पहनी हुई है और एक जींस --

अंदर तीन लोग इंतजार कर रहे हैं।

दुकान के अंदर बहोत सारे आइना लगाए गए हैं।

दुकान में बहुत सारे लाइटें हैं।

यह एक सड़क है सड़क पर बोहोत भीड़ है।

सड़क पर बहुत सारे सब्जियां और फल ये आदमी बेच रहे हैं।

सामने एक बहोत बड़ी सी पेड़ है बहोत सारे लोग इन फलों को ले रहे है।

दुकानों के पीछे बहोत सारे छोटे छोटे दुकानें है।

दोनों हिरण खड़े हुए हैं पीछे कुछ और हिरने हैं।

जमीन पर बड़े बड़े भूरे रंग के बॉक्स रखे गए हैं।

पीछे बहोत सारे पेड़ है कुछ पेड़ों के टहनियों में पत्ते नहीं है।

एक स्टेज है। स्टेज के नीचे लाल रंग के कपड़े से सजाया गया है।

स्टेज ऊपर एक आदमी भाषण दे रहा है उसके मुंह के सामने एक माइक है।

हैं अपने सर पर एक पगड़ी बांधी हुई है।

मैदान पूरे पत्तों से ढकी हुई है।

मैदान में कहीं कहीं घने पेड़ हैं छोटे छोटे।

मैदान में एक पीले रंग का झंडा है पीछे बहुत बड़े पहाड़ हैं।

एक मैदान हैं मैदान पर बहोत सारे लड़के दौड़ रहे हैं मैदान का रंग हरा हैं।

कुछ लड़कों ने लाल रंग के कपड़े पेहने हुए हैं कुछ लड़कों ने नीले रंग की कपड़े पेहने हुए हैं।

आसमान नीला है। सभी लड़कों ने अलग-अलग रंगों की जूती पहनी हुई है।

आदमी ने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है।

सलून की दीवारों को हरे रंग से रंगा गया है।

रूम के अंदर तीन कुर्चियाँ हैं जिनका रंग काला हैं।

और उनके दीवारों में आईना लगा कर रखा गया है।

यह एक दफ्तर है दफ्तर पे एक आदमी कुछ लिख रहा है अपनी कुर्सी पे बैठ कर।

कमरे के दीवारो का रंग सफेद है।

ऊपर में बहोत सारे लाइटें लगाई गई हैं।

पीछे की और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

छत पर एक बहोत ही सुंदर लाइट लगाई गई है।

इस सैलून का नाम है थ्री सिक्सटी सलून अ फैमिली सलून --

सामने में एक टेबल रखा गया है जिसके ऊपर एक स्कैनर है फोनपे का।

पीछे एक सेल्फ है जिस पर बहोत सारे शैंपू रखे गए हैं।

दूसरे तरफ सुखी जमीन है जमीन के पीछे बहोत बड़ी सी पहाड़ है।

पानी का रंग हल्का भूरा है पथरों का रंग काला है।

आदमी ने काले रंग की गेंजी पेहनी हुई है।

अपने गंजी को इस आदमी ने एक हाथ से उठा कर रखा है बॉडी दिखाने के लिए।

पीछे एक और आदमी है जिम के छत पर एक काले रंग की फैन है ऊपर एक बल्ब है।

यह एक सरकारी कार्यालय है इसके दीवारों को सफेद रंग से रंगा गया है।

कार्यालय का दरवाजा खुला हुआ है।

यह एक किताब की दुकान है दुकान के सामने बहोत सारे लोग बहोत सारे सामान ले रहे हैं।

एक आदमी ने हेलमेट पहना हुआ है सभी आदमियों ने सफेद रंग के कपड़े पहना हुआ है।

इमारत के नीचे एक दरवाजा है जो कि बंद है दरवाजे के सामने बहोत लोग लाइन बनाकर खड़े हैं।

सभी लोगों ने बहोत सारे कपड़े ओढ़ कर रखे हैं।

इमारत के ऊपर दो खिडकियां हैं खिड़कीयों को नीले रंग से रंगा गया है।

यह एक इमारत है इमारत का रंग सफेद है।

सामने एक रास्ता है एक बहोत बड़ी सी खाली जगह जहां पर कोई गाड़ी नहीं है।

एक आदमी बाइक चलाकर एक तरफ जा रहा है।

इमारत के दोनों तरफ छोटे छोटे पेड़ हैं।

सामने मे एक मूर्ति रखी गयी है मूर्ति के सामने एक बहोत बड़ी सी वॉल क्लॉक है।

वॉल क्लॉक के नीचे एक बैनर लगाया गया है बैनर मे लिखा गया है नगर पंचायत जामताड़ा बाबा हाय मे स्मार्टफोन --

पीछे बहोत बड़े घने बड़े पेड़ हैं।

मैदान के चारों तरफ सीढ़ियां लगाई गई हैं।

सीढ़ियों के ऊपर छत बनाई गई है जिसको लड़कियों से बनाया गया है।

कथ को बंबू से सहारा दिया गया है।

यहाँ दो बड़े बड़े स्लाइडिंग है स्लाइडिंग के छतों को लाल रंग और हरा रंग से रंगा गया है।

यहां स्लाइड किया जाता है उसका रंग नीला और लाल है।

पीछे बहोत ही बड़ी और सुंदर नदी हैं।

यह एक नदी है नदी में बहोत सारे लोग है।

सभी लोगों ने हाथ पर अगरबत्ती पकड़ के भगवान को याद कर रहे हैं।

नदी के ऊपर एक बहोत बड़ी ब्रिज है ब्रिज में बहोत सारे लोग खड़े होकर नीचे देख रहे हैं।

एक बच्चे ने एक लंबी सी सफेद रंग की रोड पकड़ी हुई है।

कि उसके दोनों तरफ दो बच्चे हैं दोनों बच्चे ने हाथ पर कैंडल रखा हुआ है।

बहोत सारे बच्चे सामने एक बड़ीसी क्रॉस को पकड़े हुएं हैं।

ये एक बच्चा है बच्चे ने अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रखा है।

बच्चे ने पीले रंग की शर्ट और लाल रंग की पैंट पहनी हुई है।

बच्चे के पीछे एक सुंदर सा बगीचा है बगीचे में बहुत सारे फूल है फूलों का रंग गुलाबी है।

यह एक सफेद रंग की थाली रखी गई है एक तालिका है तालिका का रंग काला है तालिका के ऊपर बहोत सारे बर्तन रखे गए हैं।

थाली के ऊपर बिरयानी है सामने में एक जगह है सामने दो थाली के सामने दो कटोरी रखी गई है एक कटोरी में दही है और दूसरे कटोरी में आचार है।

जग के सामने एक गिलास है।